येलो कुछ ग्रीन है कुछ अलग कलर के भी हैं यह बहुत सुंदर शो प्लांट हैं।

यह सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में आनंद होटल लिखा गया है।

यह दुकान है दुकान में रैक लगे हैं रैक पर बहुत सारे सामान रखे गए है जो कुछ डब्बे में या कुछ खुले पड़े हुए नी जमीन पर भी कुछ बाल्टी-बाल्टी करके सामान रखा गया है।

यह बहुत बड़ा कमरा है कमरा में बहुत सारी कुर्सियां लगी है चारों तरफ से सजा--